इस चित्र में महल दिख रहा है गुंबत दिख रहें है घास दिख रही है दरवाजे़ दिख रहे है पेड़ दिख रहें है।

इस चित्र मे घर दिख रहा है गमले दिख रहे है डब्बे दिख रहे है घास दिख रही है फूल दिख रहे है पेड़ दिख रहे है।